यह एक ग्राउंड की फोटो है इस ग्राउंड में सीमेंट की ईंटे जमा हो रखी है।

यहां पेड़ों की आकृति बहोत सुंदर है।

यहां कुछ पकौड़े की दुकानें लगी हैं।

इस पर एस_एस जैन सुबोध पी_जी कॉलेज का बोर्ड लगा है।

यहां एक सड़क की फोटो है यहां एक घोड़े और तांगे वाला है।